फिर बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं क्लीनिक प्लस के शैंपू सन सिल्क हेड एंड शोल्डर द --

यहां पर कई सारे बुक्स नजर आ रहे हैं आदमी के हाथ में फोन नजर आ रहा है यहां पे बाहर एक कस्टमर ठहरा हुआ बुक ले--

यहाँ पर एक मोबाइल का शॉप नजर आ रहा है यहाँ पे इंड्राइड फ स्मार्ट वाच यहाँ पर लह अ --

इयरफोन यहाँ पर पावर बैंक यहाँ पर मोबाइल है वनप्लस आईफ़ोन --

रेड्मी ओप्पो के यहाँ पर टैब भी रखे हुए नजर आ रहे हैं चार्जिंग पिन नजर आ रही है।

दुकान के अंदर लिखा हुआ है बैनर है। अंधेरी रात नजर आ रहा है।

यहां पे शा--

दो गेट हैं यहां पे कई सारे बाइक रुके हुए हैं यहां पे नीचे बहुत गंदगी नजर आ रही है साइकिल रुकी हुई नजर आ रही--

दरख़्त नजर आ रहे हैं यहाँ पर पाइप नजर आ रही है नीचे कार रुके हुए नजर आ रहे है खड़ी नजर आ रही है यहाँ पर।

यहां पर पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग में विंडो नजर आ रहे हैं ऊपर पानी की टंकी--

और ये यहां पे ट्रक नजर आ रही है ट्रक में आदमी चढ़ रहा हैं यहां पे डिश आ रही हैं।

उस लैब को लेवल में कर रहे हैं यहाँ पे बांबू नजर आ रहा है गिरा हुआ यहाँ पे --

आसमान नज़र आ रहा है इवनिंग का टाइम नज़र आ रहा है सूरज डूब रहा है।

इसमें यहां पे बहुत नजर आ रहे हैं ऊपर पोकस नजर आ रहा--

यहाँ पर एक पेंट की दुकान शॉप है यहाँ पे य बहुत सारे पेंट है ऑयल पेंट नज़र आ स्विच नज़र आ रहा है बोर्ड नज़र आ रहा है।

अम्पस और यहाँ पे मैंगो जूस रखा हुआ नज़र आ रहा है ऊपर वेपर्स हैं कई सारे यहाँ पर चूड़ा रखा हुआ नज़ --

यहां पे झाड़ नजर आ रहा है यहां पे बैनर नजर आ रहे हैं नीचे स्विमिंग पर पर--

एक नजर आ रहा है वेट नजर आ रहा है आईना नजर आ रहा है टी_वी नजर आ रही है।